बच्चा ने पेन पकड़ा है। एक झुकी हुई व्हाइट सी कलर में कुछ कर रही है। एक मैडम खडी हुई ह। चैनल गेट लगा हुआ है‌।

यह एक मंदिर है। मंदिर के ऊपर कुछ मूर्ति ए एक मूर्ति खड़ी एव खड़ी है और यहाँ एक चकरा है और कुछ आदमी लोग बैठे हैं।

लिख रहा है। फुटेली फोन रखा हुआ है। दो लेडीज बैठी है। एक जेंट्स बैठे हुए है और कुछ बोर्ड में बोर्ड भी टंगा है।

एक लेडीज सूट पहने हुए हाथ बांधे खडी हुई और साइकिल है और हरे-हरे घास दिख रहे --

हल्का- हल्का गुलाबी और पीले कलर्स के पत्ते बने है और एक साइड में प्लेन और हरी हरी झाड़ियों से घिरा हुआ है और हल्का आसमान दिख --

यहाँ एक बहोत सारी बस स्टैंड जैसा है बहोत सारी टू व्हिलरें खड़ीं हैं ।